घास दिखाई दे रहा है पोंधे दिखाई दे रहे है| पेड़ है पौधे है ।

हनुमान जी की तस्वीर दिखाई दे रही है| एक फोटा दिखाई दे रहा है एक सन में|

घर दिख रहा है| लाइन दिख रही है पाइपलाइन दिख रही है| पत्थर पड़े हुए दिख रहे है।

रोड दिख रहा है| खम्बा दिख रहा है| पेड़ दिख रहे हैं| बिल्डिंग दिख रही है| ऑटोरिक्शा दिख रही हैं उसमें आटी बैठी हुई दिख रही हैं| खास हैं ऑड है पेड़ हैं।

एक हॉल दिखाई दे रहा है जो के बोहोत साड़ी खुर्सिया दिखाई दे रही हैं| जो बलून दिखाई दे रहा है वाइट बलून दे रहा है।

टॉल्ज़ दिखाई दे रही हैं लकड़ी की कुर्सी दिखाई दे रही हैं काँच दिखाई दे रहा हैं ईंट दिखाई दे रही हैं छत दिख रहा हैं।

लोग दिखाई दे रहे है बादल दिखाई दे रहा है पानी दिखाई दे रहे है घास दिखाई दे रहा है।

पानी दिख रहा है| झरना गिरते हुए दिख रहा है| नीले कलर का झरना दिख रहा हैं| हरे कलर का झरना दिख रहा है।

साइकल दिख रही है| बिल्डिंग दिख रही है| छत दिख रहा है| बादल दिख रहा है| ब्लू कलर का पोता हुआ दिख रहा है।

लोडिंग दिख रही है गाड़ी दिख रही है| केंद्र लगा हुआ दिख रहा है।

नदी दिख रही है| पानी दिख रहा है| ग्रीन कलर के पौधे देख रहे हैं| घास दिख रही है| सूरज दिख रहा है।

बादल दिख रहे हैं पानी दिख रहा है| इसमें छांव दिख रही--

रोड दिख रहा है घास दिख रहा है रोड दिख रही पेड़ पौधे दिख रहे है| घर दिख रहा है छत्ता दिख रही है तार दिख रहे है।

झोला दिख रहा है| दुकान दिख रही है| लड़की दिख रही है| चदर दिख रही है| दुकान मे समान दिख रहा है।

पेड पौधे दिख रहे है उसके पीछे घर दिख रहा है| बिल्डिंग दिख रही है| ग्रेन कलर पता हुवा दिख रहा है।